बड़ा सा पुराना सा किल्ले का गेट दिख रहा है।

खेत के बगल में कुछ हरे भरे से पेड़ लागे हुए हैं।

हॉल की दीवारों पर बड़े-बड़े से कांच लगे हुए हैं और दीवारों पर हल्के हरे रंगों का पैंट पुता हुआ है।